इस चित्र में हमें एक झरना दिखाई दे रहा है जो कि पहाड़ से बहता हुआ आ रहा है झरने का पानी बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है।